और यहां पे खिड़की भी है।

और रोड बराबर बराबर पेड़ लगे हुए हैं।

ये यहां पे एक दीवार में जाली छुड़वाई हुई है।

इनके नीचे लोहे का स्टैंड लगा हुआ है काले रंग का।

ये यहां पे एक तालाब सा है।

ये यहां पे एक मैटेरियल शॉप है।

ये एक मोबाइल वर्कशॉप है।

और यहां पे दो तीन आदमी बच्चे इधर बैठे हैं।

और यहां पे हैप्पी बर्थडे एनी लिखा हुआ है।

और बराबर में से एक आदमी कैमरे स्टैंड से फोटो ले रहा है।

और यहां पे बहोत सारी भीड़ लगी हुई है।

ये यहां पे एक औरत और एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहां पे बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई है।

ये यहां पे एक रूम में एक एलसीडी एल_सी_डी लगी हुई है।

उसे उस एल_सी_डी के नीचे एक टेबल सी है जिसमें तीन लॉकर हैं।

जो मतलब खाने का सामान देती है।